ये दिखाई गयी है सामने मे रेड कलर का कुछ चादर सा दिखाई गया है और वाल पे कुछ स्टेचू से बने हुए से दिखाई से दे रहे है ऊपर मे फ्रेम जैसा कुछ लगा हुआ है बहुत सारी--

बहोत कलर की बर्डर है जिसकी ब्लैक कलर की बॉर्डर है कुछ लड़की भी दिखाई दे रही है नीचे का फर्श टाइल्स --

शॉप को दिखाई गया है जिसमे आर के ब्रदर्स स्टाइल ड्राई लिखा हुआ है सामने मे एक फोर व्हीलर लगा हुआ है जो की वाइट कलर का है पीछे ब्लैक कलर की बड़ी सी--

टायर दिखाई दे रही है और सामने ब्लैक कलर की छोटी टायर दिखाई जा रही है उपर में बहोत सारे पोधे जैसे लगे हुए है बेनर जैसे फ़ूड लगे हुए है।

ग्रीन कलर का एक अः बास्केट जैसा कुछ अः सारी पाई छी--

सामने में कुछ लड़किया बैठ के फोटो लेते क्लिक करवाती दिखाई दे रही है पीछे में कुछ प--

पेंट के दुकान को दिखाया गया है जहाँ बहुत सारे पेंट के बाल्टी रखे हुए है जो की ग्रीन येलो कलर मे रेड वाइट मे दिखाई दे रहे है बहुत सारे कार्टन दिखाई दे रहे है ऊपर की सेलिंग --

सामने में लैपटॉप दिखाई दे रही है बहोत सारे सामान है छोटे छोटे दिखाई दे रही है कुछ भूरी भी--

घर के कुछ वाइट से लिखा हुआ है पीछे में एक फोटो फ्रेम है जिसमे एक घर बनी हुई है वाइट कलर की दिखाई दे रही है उसके सामने में--

फेन उनको दिखाया गया है जहाँ पर एक लडके के हाथ में सूर्य दिखाया गया है और वो एक आदमी के फेस को पकड़ करके सेविंग करता हुआ दिखाई दे रहा है उस आदमी के--

रेड कलर में ग्रीन कलर में बलून्स लगे हुए हैं सामने में एक अं पेडीक्योर का कुछ टेबल जैसा किट रखा हुआ है सामने मे--

एक कटोरी सी रखी हुई है उसमें व्हाइट कलर का कुछ दिया हुआ है एक बॉक्स रखी हुई है चॉकलेट कलर का सोफा है उस पे व्हाइट कलर की नीचे की सीट है ब्लैक और व्हाइट फ्रेम --

मैदान को दिखाया गया है और बगल-बगल से पूरे पेड़-पौधे दिखाए जा रहे हैं उपर मे आसमान दिखाया जा रहा है जिसमें थोड़े से बादल छाए हुए दिखाई दे रही है दूर में एक टावर भी दिख--

अ ड्रम जैसा दिखाया गया है जोकि ग्रे कलर हा है निचे ओरेंज कलर की पूरी फर्स है और बिच बिच में येल्लो कलर के बोल --

शॉप को दिखाया गया है जिसमे रॉयल पेट केयर लिखा हुआ है उसमे एक लड़की की पिक्चर है जो की हाईड की गयी है उसके सामने वो एक कुत्ते को पकडे हुए दिखाई दे रहे है जो की ब्लैक --

अम्म वाईट कलर में बगल में एक रोयल पेंट केयर वाईट बोर्ड बेग ब्लू कलर से लिखा गया है ब्लू कलर का सेटर गिरा हुआ है सामने में--

दीवाल की कलर वाइट कलर से है कुछ कलर छूटे हुए सीमेंट दिखाई दे रहे है सामने में एक कुछ बोतल सा--

एक दूकान को दिखाई गया है ग्रोसरी दुकान को दिखाई गया है जिसके सामने मे चिंग चाउमीन जैसा कुछ पैकेट लगा हुआ है सामने मे लेज़र के--

डब्बे जिलेट के लगे हुए है ऊपर में बहोत तरह के डीओ परफ्यूम के बोतल दिखाई दे रहे है वे--

हार्ट शेप में डेकोरेट किए गए है जो की रेड कलर में दिखाई दे रहे है नीचे में कुछ चीजे--

तीन प्लेट में बहोत सारे जूठे रखे हुए है जिसमे कुछ चिकन के कुछ पीस दिखाई दे रहे है कुछ बिरयानी टाइप के दिखाई दे रहे है।

फक्शन प्रोग्राम भलेई हटल दिखाई गई है जहाँ बहोत सारे लोग दिखाई जा रहे है जहाँ बड़े बड़े होल जैसे रिंग जैसे लाईट झलते हुए दिखाई दे रहे है और पास के--

और राइट साइड में यु कर के सेलिंग नहीं येलो कलर की स्क्वायर में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है कुछ ब्लू कलर की भी लाइट जल रहा है।

किसी को दिखाया गया है जहाँ पर किसी कारखाने टाइप की कुछ दिखाई जा रही है जो कि पूरे कारखाने के कलर वाइट कलर से है और सारे के पिलर--

साइड में कुछ खाई जैसी वाइट वाइट सी दिखाई दे रही है कुछ बॉक्स भी लगे हुए ब्लैक से दिखाई दे रहे है।

जहा पर एक पतंग भी छोटे छोटे से आँखों की पिक्चर जैसी बनाई गयी है वाइट कलर की पतंग पर येलो कलर की पतंग पर तीन--

एक पेंटिंग जैसे कुछ पत्ते जैसे बनाए हुए है जो की ब्लैक रेड और स्काई कलर में दिए गए है पिंक कलर के--

पतन दी गयी है किसका है और वाइट में दी गयी है बांस के गा में ब्लू एंड गोल्डन --

ऊपर से सामने से सूर्य दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैंसामने से कुछ ट्रांसफरमा--

यहाँ कई में कुछ लिखा गया है खिड़की दिखाया जा रहा है खिड़की के ऊपर एक हॉल दिखाया गया है ऊपर में जीसस के तीन--

ये फोटो दिखाई गयी है वहा एक आदमी खड़ा दिखाया गया है जो की कुछ कर के पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक --

ये डॉक्टर के चैम्बर को दिखाया गया है जो कि उम्म दांत के डॉक्टर की चैम्बर टाइप दिखाई जा रही है पूरी वाइट कलर की दिखाई जा रही है ऊपर मे फैन लगी हुई है।

मिट बॉक्स दिया गया है निचे से एक मोटा सा पाइप दिया है जोकि वाईट और ओरेंज में दिख रहा है सामने में एक घर है जोकि वाईट कलर की दिखाई जा रही है अगल बगल में--